सजावट दिख रही है सामने ऐसा लग रहा है जैसे शादी का--

ऑफिस लग रहा है तीन पंखे दिख रहें हैं सामने दो तीन लोग बैठे हुए हैं दो ब--

सीलिंग फैन दिख रा हुआ है ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऑफिस हो ऑफिस वर्क चल रहा है दो तीन सीलिंग फैन यहां पर दिख रहे --

सामने एक रोड दिख रही है रोड के--

यहां एक बोर्ड दिख रहे हैं ये बोर्ड सफेद कलर का है दो बोर्ड नीले कलर के हैं एक बोर्ड लाल कलर का है।

खड़े हुए है। ऐसा लग रहा है कोई मशीन चेक कर रहे हैं।

और यहां पर एक बहोत अच्छा सा लग रहा है ऐसा लग रहा है यहां पर देख कर ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्मारक टाइप का बना हुआ हो।

दाएं तरफ भी एक कॉलोनी दिख रही है।

ऐसा समझ में आ रहा है वहां रोड अच्छी है बहुत।

कि व्यक्ति कुछ झाड़ियों के पास खड़ा हुआ है एक ऐसा लग रहा है कि पेड़ को काट रहा हो।